चित्र में मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है चित्र में मुझे लाइट से लिखा सुपर मी दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक टेबल और कुर्सी रखी दिख रही है।

और चित्र में एक घड़ी दिख रही है और चित्र में मुझे पर्दा लगा दिख रहा है चित्र में झूला दिख रहा है।

लड़का मोबाइल चलाते दिख रहा है चित्र में मुझे कई लाइटिंग जलती--

मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे एक टेबल दिख रही है।

शॉप पे मुझे कई सारा सामान टंगा हुआ और लगा हुआ दिख रहा है।

चित्र में मुझे लाइफबॉय साबुन दिख रही है और सेल दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है और--